चीज़े आते हैं और यहाँ पर शॉल ब्लैंकेट बहुत सारे कपड़े हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कपड़े हैं और बेचे जाते हैं।

और एक इसका बनान इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छे तरीका से बना--

यहाँ पर कई तरह के भोजन मिल जाते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा से टेंट भी लगाए गए है और यहाँ पर लाइटिंग भी हुआ है।

और इस के बगल में बहोत सारा फूल भी है।